इस फोटो मे मुझे पेड़ दिखाई--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

इस फोटो में मुझे घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

मैदान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे फाइलें दिखाई दे रही हैं।